इस तस्वीर में लाल और सफेद रंग का पर्दा दिख रहा है और बहुत सारे व्यायाम करने के यंत्र दिख रहे हैं एक कांच दिख रहा है कांच के बाहर एक--

इस तस्वीर मे काली छत दिख रही है लाइट दिख रही है और कुछ व्यायाम करने के यंत्र दिख रहे हैं।

इस तस्वीर मे एक इमारत दिख रही है रात हो रही हैं और नीचे के तरफ ये होटल जैसा दिख रहा हैं और उसमे अंदर बहुत सारी लाइटें जल रही हैं और सीढ़ियाँ अंदर जाती हुई दिख रही है।

इस तस्वीर में कुछ लोग नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक बहुत बड़ा झूमर दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर मे एक मंदिर दिख रहा है एक काला आसमान दो पहिया और चार पहिया वाहन इधर उधर जाते हुये दिख रहे हैं और कुछ लोग दिख रहे हैं और लाइटें जल रही है।

इस तस्वीर मे एक मूर्ति बनी हुई है और उसकी दाड़ी है और उसके हाथ मे कुछ है और पीछे कुछ हरे-भरे पेड़ दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में आसमान दिख रहा है। थोड़े पेड़ दिख रहे है।